यहां पर घर बन रहा है।

एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग है ऊं ऊं जो ब्लू से भी पेंट किया हुआ है।

और शेटर लगा हुआ है बगल में भी घर है लाइन बोला तार है।

एक गोला सा है जो उसके अंदर हरा सा नीचे है पौधा।

बड़ा सा होटल है।

अंदर मे लगा हुआ ह--

उस पर पर्स रखा हुआ है हर कलर का।

आगे में काउंटर है बैलून से सजाया हुआ है।

लाइट जल रहा है अ देखने में बहुत प्यारा लग रहा है।

एक ठेला है ठेला पे दो तीन आदमी है एक सिलेंडर है एक पिला डिब्बा है।

अगल बगल खंबा है ऊपर से छाया हुआ है टेंट से।

और नीचे में मुख्य कलर का कालीन है।